और यहाँ का मौसम बिल्कुल साफ है।

इस तस्वीर में एक बेड दिखाई दे रहा है।

इसकी वॉल जो है वो सफेद रंग की है।

जो अपने लैपटॉप पे है।

किसी को काम को करते नजर आ रहा है।

यहाँ एक बोर्ड भी लगा है।

यहाँ एक पिक्चर है जिसमें एक बड़ी सी बिल्डिंग है।

यहाँ और बगल में एक सीढ़ी भी है।

और पे यहाँ सामने के साइड में --

और यहाँ काफी अच्छी-अच्छी लाइटें लगाई गई ।

यहाँ पे भीड़ भी काफी दिखाई दे रही है --

काफी ही बड़े से बॉक्स में रखे हुए हैं और यह बॉक्स लकड़ी का दिखाई --

जहां पर एक बड़ा सा पार्क है।

और इनमें से एक व्यक्ति --

सामने के साइड में दो और व्यक्ति भी बैठे हैं।

किसी चीज़ की बिक्री कराई ते दिखाई दे रही है।

यहाँ चार माला लटकी दिखाई पड़ रही हैं।

इस तश्वीर में एक बड़े सी होटेल का पिक्चर है।

टेबल और चेयर्स भी लगे हुई हैं।

गार्डन भी दिखाई पड़ रहा है।

और पीछे कुछ आदमी टहलते --

यहाँ पे कुछ मेन्यू बुक भी है।

इसकी अप्पर साइड में बहुत अच्छी सजावट --

यह तस्वीर किसी खाली जगह की है।

एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

करकर एक जिम की तस्वीर है।

पीछे में कुछ खिड़कियां भी हैं।

यहाँ और वाइट पिंक --

लोग भी नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वह उसकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे कई सारे लाइटें भी लगी हैं।

और यह रोड साइड का तश्वीर है।

इनमें हमें कई सारे सब्जियां देखने को मिलती हैं।

जो ग्रीन वाइट सेट में है।

जो कपड़े की दुकान में हैं--

और यह रेड कलर की टी-शर्ट है।

लड़कियों के कपड़े भी हैं --

पीछे में कुछ बिल्डिंग्स भी हैं।

काफी बड़ा दिखाई पड़ता है ।

इस तस्वीर में एक दुकान है।

और यह दिन का समय है--

इस स्कूल के आगे कुछ बाइक हैं।

जो लोहे का है और यह ग्रीन कलर का गेट है।

बढ़ी एक इमारत दिखाई दे रही है।

और सोफे दिखाई पड़ रहे हैं।

ऊपर के साइड में कुछ सीलिंग लाइटें भी है।

ऊपर में ग्रीन ग्लास भी लगे हुए हैं।

जहां पर दो पंखे भी हैं --

साइड में एक ए-सी भी नजर आ रहा है।

कुछ व्यक्ति तेहल्ले दिखाई दे रहे हैं।

यह एक रोड साइड की तस्वीर है।

और यह काफी ही बड़ा --

और ये रेस्टोरेंट सजाया गया है --

यह तस्वीर एक सर्विस सेंटर का है।

यहां पर रात का समय हो रहा है।

किसी बड़े से जगह की है --

साइड में इसके कुछ पेड़ भी हैं।

इस तस्वीर में एक टी शॉप है।

जो प्लास्टिक के मग से --

इस तस्वीर में एक बड़ा सा --

और यहां पे तीन गाड़ियां भी नजर आ रही हैं ।

इस तस्वीर में एक बेडरूम है।

और एक मेकअप डेस्क भी है।

यहां पे कुछ गाड़ियां भी हैं।

मौशम अच्छा दिखाई दे रहा है।

और यहां दो साइड टेबल भी है --